इस तस्वीर में आप को एक घर--

लाइब्रेरी देख रहे हैं।

बच्चे के हाथ में माइक है।

इस तस्वीर में आप--

दुकान को दिखाया गया--

लोग उसे देख रहे है।

फोन रखा दिखाई दे रहा है।

सुंदर जिम बनी हुई है।

बुक्स की दिखाई दे रहे हैं पेटीएम का स्कैनर लगा--

वाहन के टायर्स मिलते--

चाहता है जहां पिज्जा प्रयोग इटालियन --

पर टेबल चेयर और सोफा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में घास पर--